पुरुष टिका हुआ हैं और फोटो खिंचवा रहा हैं।

जिसके बीच में एक लाख तीन सौ पैंसठ और उनसठ--

बिल्डिंग इसी को देखकर बनाई जाएगी ऐसी ऐसी बिल्डिंगे --

जिसके सामने से दो औरतें जा रही हैं।

लाइटें भी दिख रही है जो बहोत ही सुंदर लग रही है हम--

अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है।